इस मकान में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं साइड में से ऊपर आशमान (आसमान) दिखाई दे रहा है नीचे बहोत सारा फर्स दिखाई दे रहा है।

ऊपर बहोत सारे बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं स्टार बने हुए हैं सामने की दिवार पर कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है एक अलग से --

सामने बहौत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जो की बहौत लम्बी बहौत दूर तक गई हुई है।